इस फोटो में मुझे पत्थर की चट्टाने दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे मंदिर दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारी बकरी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे टोल नाका दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे दरवाजा दिखाई दे रा--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

इस फोटो में मुझे चारों तरफ कंटीले तार दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे बड़े बड़े पत्थर--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

इस फोटो में मुझे बहुत सारी कुर्सी दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे लोहे के पाइप दिखाई दे रहे--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

इस फोटो में मुझे चूल्हा दिखाई दे रहा है।